इस तस्वीर में एक युवक जो लाल शर्ट एवम काले--

कल-कारखाने का है जिसमें गले हुए घातु को --

जो नीले रंग का टी-शर्ट पेहना हुआ है और काले रंग का पैजामा पेहना हुआ है अपना सेल्फी ले रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़े से मैदान के बगल में एक पगडण्डी दिखाई पड़ रही है और दूर में--

यह तस्वीर किसी धार्मिक स्थल से संबंधित --

यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है।

बहुत सारी मोमबत्तियां थोड़े दूर में जली है।

यह एक तस्वीर है जिसमें एक --

विकेट कीपर बॉल का इंतज़ार --

यह तस्वीर गुड़िया शुभ हाउ --

इस तस्वीर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दिखाया गया है।

तीन-चार लोग ओक बैंक से बाहर निकल रहे हैं।